एक शॉप दिख रही है शॉप का नाम लिखा है मॉडर्न बैग --

काले कलर का बैनर बना हुआ है चित्र बना हुआ है सफ़ेद कलर कपड़े पहने हुए लेडीज दिखाई दे रही है एक शोरूम दिख रहा है शोरूम में बहोत सारी लाइट दिखाई दे रही है।

खिड़कियों के बाहर एक पट्टी दिखाई दे रही है जो नीले रंग की है।